जैसे की नीली पीली हरी और लाल और हम देख सकते है छोटे बच्चों का यहाँ पर बद्क बनाया गया है जो फिसलने के लिए पिसल बंडा होता है पानी है बड़ा ही सुंदर साफ सुथरा है।

पुराणिक चीज़े अ को इफाजतसे रखा जाता है जैसे की यह पर एक छोटा सा पिल जो था ये होता है उसका कारीगरी यहा पर उठा कर रखे गए है हम देख सकते है।

मौजूद है एक पेन पेपर और स्टेप्लर रखा है यहाँ पर हमे आईने से बाहर कई सारे लोग नज़र आ रहे है काम करते हुए और दीवार पर एक कैलेंडर लगा है पीला--

यहा पर मौजूद है यहा पर ऐसा आ पिसल बंडा बनाया है जिसे इंद्रधनुष और जो दो रंगोमे खा ए हो सके यहा पर ब्लू और हरा है फिर काला और सफ़ेद है।

जाने के लिए सिडिया मौजूद है। दरम्यान मै हम एसबीआई कार्ड दिखाई दे रहा है। यहा पे छोटे बच्चे की कार रुकी हुई है नीले रंग की।

थोड़ी देर के बाद सूखने के बाद उसे निकलेंगे तो हमे निखार आ जाएगा ट्वेन्टी फोर कैरट गोल्ड का है और देख सकते है की ब्यूटी पार्लर सलोन है जहा पर ये इस्तेमाल करते है।